हमारी आवश्यकता की बहोत सारी चीजे हैं।

एम.आर.पी. भी लिखे गए हैं बोर्ड पे।

मलेरी भाली प्रथम चरण जल विद्धुत परियोजना यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है।

ये भटवाड़ी ब्लॉक में स्थित है और --

दिसम्बर जनवारी की तस्वीर लग रही है और --

इस तस्वीर में म इतनी लंबी लाइन लगी है ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी सरकारी --

जे.एस.टी. सुविधा सेंटर यानि जो आप को जो है टैक्स बढता पड़ता है जी.एस.टी. --

इस घर में --